कब्रिस्तान है और टट्टी है।

बहुत भीड़ है रोड पे।

कि यहां पे छठ पूजा का भीड़ है बहुत सारे महिलाएं यहां नदी के किनारे बैठी हुई हैं।

ये बड़ा सा होटल है विनायक का--